यह किसी तरह का डान्स रूम हो सकती है डान्स क्लास हो सकती है इसमे ऊपर की तरफ घड़ी दिखाई दे रही जो की काफी बड़े है और दो तिरंगे दीवार मे चिपके हुए नजर आ रहे है पीछे कि दिवाल पर ए_सी लगा हुआ है और कुछ गुब्बारे लगे है सामने एक बहुत बड़ा मिरर भी लगा है।

यहा किसी जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकठ्ठा दिखाई दे रही है सामने दो-तीन घर बने हुवे है एक हरे रंग का और एक नारंगी रंग का दिखाई दे रहा है।

और एक ट्रॅक्टर खड़ा हुआ है जो की नीले और सफेद रंग का है कुछ बोरिया नजर आ रही है और कुछ लोग और कुछ बच्चे भी खड़े हुए नजर आ रहे है एक आदमी मशीन चलाते हुआ दिख रहा है जो की धान दलनेकी मशीन हो सकती है।

काफी बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है इसके अंदर कई सारे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे है यह पौधे किसी फुल या किसी सब्जी के होसकते है यह किसी तरह की खेती वाला खेत दिखाई दे रहा है।

इस जगह के अंदर एक आदमी स्कूटी से जाता हुआ दिख रहा है और दो आदमी पैदल जाते हुए नजर आ रहा है।